कलर से स्कोर धागे से बांधा गया है पत्थर में इस लकड़ी को अ-रखा गया है और ये पहाड़ में बहोत ऊँची जगह पर--

जाली दार बनी हुई है इसमें चार-पांच हैं दीवारे दिखाई दे रही हैं गार्डन में गुलगस्से में गेन्दे का फुल फुला हुआ है और मोगरा भी दिखाई दे रहा है।

ये एक बच्चों के लिए या सब के लिए गार्डनिंग हैं जिसमे घिसलते हैं ये घिसल पत्ती है अगल बगल हरे-हरे --

जो बैठी हुई है लाल कलर का कपड़ा पहने हुई है बगल में पेड़ दिखाई दे रहा है जिसमें पत्ते एक भी नहीं हैं सुख गया है बगल में पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यह ईंटो से बना दिखाई दे रहा है और पत्थरो का भी इसमें उपयोग किया गया है बगल मे एक और घर दिखाई दे रहा है जो भी ईंटो से बना दिखाई--